मुझे दो बिल्डिंग दो बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक बिल्डिंग जो एक तल्ला है और एक दो तल्ला है।

पीछे एक पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ का जो आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है।

उसके बाद दरवाजा ही दिखाई दे रहा है जोकि खुला हुआ खुला हुआ है उसका बाद दीवार दिख रहा है जोकि सफेद रंग का--

किनारा में कुछ दस इंसान है और दो थैला है एक थैला छोटा है और एक थैला बड़ा है।

जो कि प्लास्टिक से बान्हा हुआ है अभी भी और एक लैपटॉप है जो टेबल में रखा है जो कि ब्लैक रंग का--

पॉट अ छे ठो सात ठो टांगा हुआ है जो--

नीचे भी बहुत सारा प्लांट्स लोग लगाया गया जोकि--

और बहुत सारा औरत लोग खड़े हैं खड़े हुए हैं कोई यहां आगे की ओर मुंह तो कोई पीछे की ओर मुंह जो औरत है किसी किसी का चेहरा को जो कुछ चीज से ब्लर किया हुआ है और बहुत सारा--

कलर का कुर्सी है और पिछे जो हरा कलर का पत्ता लोग है।